की हुई है और बीच में वाइट कलर की चादर लगी --

और पास में कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है और एक येलो कलर का सेंटर दिख रहा है।

और उसके अंदर फुल उगे हुए हैं और एक लेडिस फूल के अंदर --

डिजाइन में बने हुए दिख रहे हैं।

तार वाला खंभा लगा हुआ है और उसमें --

के नाम से एक बोर्ड लगाया हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर कुछ --

हैं जिसके अंदर एक आदमी जा रहा हैं और उसके पास --

एक और उसके ऊपर व्हाइट कलर का टेप बांधा हुआ दिख--

पेड़ लगाया हुआ दिख रहा है और कच्ची जमीन दिखाई दे रही है।

और उसके आगे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

टोपिये के अंदर डाल रही है और--

काम कर रहे हैं और ऊपर के आठ सी_सी --

यहां सामने एक बहुत सारे बॉक्स के अंदर अलग अलग प्रकार के --

ऊं अ घर के आगे गार्डन में पौधे रखे हुए दिखाइ दे रहे--